मुझे एक बैंक दिख रहा है बैंक के ऊपर जो बोर्ड है व रैड कलर का है लाल कलर का।

और छड़ के नीचे लकड़ी लगी हुई हैगी लकड़ी के लड़की के आजु-बाजु रस्सी हैगी।

और एक एक और मैदान है गा वह पर लाइन दिख रही होगीं जो वाइट कलर से खींची हुई है।

बा ता बाताई लिखा हैगा रैड कलर से और ऊपर दो खिड़कियाँ है जो ब्लैक कलर की है और नीचे --

और जो नीचे ग्राउंड सा है मतलब मैदान सा है इसमें फर्श बिछा हुआ है जो ग्रीन रेड फर्श है।

और कुछ पंक्षी भी दिख रहे है ब्लैक कलर के--

मुझे एक मो अमम वीवो सैमसंग मोबाइल की शॉप दिख रही हैगी।

एक लड़का हैगा और एक साइकल खरीदी हैगा ब्लैक कलर के उसमे पानी डाल रहा हैगा पौधों में--

एक बैंक दिख रहा है बैंक के अंदर मशीन दिख रही है ब्लैक कलर की बैंक के ऊपर का स्टोर दिख रहा हैगा--

झोपड़ी पे डंडी लगी हुईं हैं बोहत सारी झोपड़ी का गेट है जो लकड़ी का है।